और ये सब तो अब बहुत जिस भीड़-भाड़ जगह को हमलोग मार्केट कहते हैं और बिहार में भारत में कहीं भी आप खोजेंगे ये मिल जायेगा मार्केट हमलोग इसको मा --

और ये दुकान सभी जगह होता है इसमें आदमी सामान लेता है आप कोई भी चीज़ अगर आप चाहेंगे तो ले सकते हैं इसमें चावल दाल --